कुछ बड़ा ग्राउंड दिखाई दे रहा है जिसमे ऐ बहोत सारे लड़के चलते दिखाई दे रहे है वाइट कलर और र खाकी का पेन्ट पेहने हुए दिखाई दे रहे है जो झंडे भी रखे हुए दिखाई दे रहे है।

इसमें कुर्सिया रखी हुई दिखाई दे रही है नीचे टाइल्स लगी दिखाई दे रही है एक महाराणा प्रताप की पैंटिंग लगी दिखाई दे रही है।

बिल्डिंग के सामने बहुत सारे लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे है रोड दिखाई दे रहा हैं जिस पर हरी घास दिखाई दे रही है और बहुत सारे पौधे भी दिखाई दे रहा है आसमान दिखाई--

एक हॉल दिखाई दे रहा है जिसमे बहुत सारी खिड़किया दिखाई दे रही हरे नीले परदे दिखाई दे रहे बहुत सारे बच्चे--

एक एक झरने से पानी कूदता दिखाई दे रहा है पानी सफेद दिखाई दे रहा है और मैदान मे बहुत सारे बच्चे खड़े दिखाई दे रहे है कुछ बड़े लोग भी खड़े दिखाई दे रहे है।

बहुत बड़ा है अ हॉल दिखाई दे रहा है हॉल मे बहुत सारे लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे है जो योगा कर रहे है।

इश बहुत सारे मकान भी दिखाई दे रहा है लाइट जलती हुए दिखाई दे रही है ऊपर आसमान काला दिखाई दे रहा --

एक सड़क दिखाई दे रही है सड़क पर लोग जुलूस निकालते हुए दिखाई दे रहे है जिसमे बहुत सारी लकड़ी के बड़े-बड़े ढोलक बजाते हुए लोग दिखाई दे रहे --